नीचे फुल रखे हैं जिसमें ज्यादातर फुल पीले कलर की हैं और लाइटों से सजी हुई दुकान है।

जिस पर छोटे छोटे हरे हरे पौधे लगे हुए है जमीन में हरी घास उगी हुई है सामने से सूरज निकल रहा है।

ऊपर एक फैन लगा हुआ है राइट साइड में दीवाल पर एक टेबल फैन लगा हुआ है और हरे कलर की कुर्सी रखी--

ये एक पार्क की फोटो है जिसमें एक पाइप पड़ा हुआ है जो फूलों में पानी डाल रहा है अगल बगल बहुत सारे गमले हैं।

और सन लाइट पौधों पर भी पड़ रही है सामने एक मकान बना हुआ है जो वो सही है।

चाय की दुकान में बहोत सारे कुल्ल्हर रखे हैं एंड अंडे रखें हैं स्टील का बर्तन रखा है और चाय की दुकान के ऊपर--

ये एक एग्रीकल्चर लैंड की फोटो है आसमान से बिजली निकली हुई है बिजली का खंभा लगा हुआ है दूर बहोत सारे पेड़--

इसको नीचे बहोत सारे जीने खुला नीला आसमान राइट साइड में एक दुकान--

कुछ पेड़ पौधे लगे हैं सामने व्हाइट कलर का मकान है एक लड़का है जिसने ब्लैक कलर की चप्पल पहन रखी है ब्लैक कलर के पाइप --

यु बैठा हुआ है उसके हाथो में कुछ है और ऊपर बार लिखा हुआ है।

यफ ट्री के सामने बहोत बड़ा आंगन है ब्ल्यू कलर की लोहे की लाइंस बनी हुई है जिसपे छोटे--

ये किसी मार्केट की फोटो है ऊपर खुला आसमान नीचे खंभा लगा हुआ है खंभे में लाइट की तार है एक बोर्ड लगा हुआ है।

बुक स्टाल पर बहोत सारी बुक है सामने बहार लाइट लगी हुई है।

एक पहाड़ की फोटो है जिस पर कुछ इंसान पहाड़ी गुफा में अंदर जा रहे हैं।

यह एक जगह है जिस पर गोल-गोल चक्र बना हुआ है चारों तरफ उसके गोल-गोल करके घास लगी हुई है जिसका हरे कलर का कलर --